इस इमेज में सामने यहां पर एक पहाड़ दिखाई दे रहा है।

यहां पर कुछ घर भी नजर आ रहे हैं सामने यहां पर एक पहाड़ भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर कुछ लोग नजर आ रहे हैं।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

इस इमेज में सामने यहां पर एक पुस्तकालय दिखाई दे रहा है यहां पर किताबें रखी नजर आ रही हैं।

इस इमेज में सामने यहां पर एक टॉय शॉप दिखाई दे रही है यहां पर खिलौने नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में सामने यहां पर एक स्टॉल दिखाई दे रही है यहां पर बरनी में बिस्किट रखे नजर आ रहे हैं।

सामने यहां पर बाइक भी खड़ी नजर आ रही है।